और यहाँ पे साइड में और कुछ समान भी रखा हुआ है और यहाँ पे देखने से लग रहा है कि कार की रेपैरींग की जाती है यहाँ पे।

आपके सामने एक बहुत बड़ा झूला बना हुआ है और यहाँ पे सामने एक व्यक्ति नजर आ रहा है।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

यहाँ पे सामने एक व्यक्ति खड़े हुऐ हैं मोटरसाइकिल खड़ी हुई है और यहाँ पे बड़े-बड़े गेट भी लगे हुऐ हैं।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

यह एक जिम है जहाँ पे लोग वर्कआउट करने के लिए आते है और यहां पे बहुत सारी मशीने रखी हुई है डंबल्स रखे हुए है।

सामने एक गेट लगा हुआ है। और सामने बिल्डिंग भी बनी हुई है और यहाँ पे पेड़ भी दिख रहे है जो ग्रीन कलर में हैं। और ऊपर बिल्डिंग दिख रही है। सामने रोड भी है और यहाँ पे एक लकड़ी है।